सेल्फ में बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है और पीछे ये टपरिया बनी हुई है वहीँ पर भी दिखाई दे रहा है।

ये दुकाने है । यहां पे बहुत-सारे खाने-पीने कि चीजे रखी हुई है।